यह एक मोबाइल की दुकान है। यहाँ मोबाइल में डाउनलोड किया जाता है। यहाँ सिम भी मिलते है। आईडिया सिम --

यह एक स्कूल है यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं सभी बच्चे ड्राइंग बना रहे हे | ये लोग पेप सादा पेपर से ड्रॉइंग बनाते है ।